इस चित्र में हमें मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एयरटेल लिखा है।

कांच का दरवाजा दिख रहा है।

काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

एक लकड़ी का दरवाजा बना है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक मॉल दिखाई दे रहा है।

बूढ़ी औरत बैठी हुई है।

कुछ बादल नजर आ रहे हैं।

तेज धूप निकली है।

इस चित्र में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है।

कुछ कार खड़ी हुई हैं।

एक औरत खड़ी हुई है।

इस चित्र में हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा हैं।

एक पेड़ नजर आ रहा हे ।

जिसे फूलों से सजाया है।

पीले सफेद फूल दिख रहे हैं।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।